कार्वेट बाइक का जरिया है ये कंपनी हैं इसकी और यहां हैंडवाश आदि चीजें रखी हुई से--

और इसमें बड़े बड़े टायर लगे हुए हैं जिनके अंदर प्ले--

बोल का कलर आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है जहां पे अनेक सा समान रखा हुआ है।

खुला आसमान हैं। हरे रंग के पेड़ है।

और अनेक सी चीजें पिलर दिख रही हैं।

यह एक आपको लाइब्रेरी दिखाई दे रही है जहां पे--

वोल पे वाइट कलर का पेंट दिखाई दे रहा है और बहुत से टेबल दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में म्यूजिकल क्लास लगी हुई है बच्चे अपना अपना ढोलक बजा रहे हैं नीचे टैल लगी हुई है पीछे--

पीछे घर दिखाई दे रहे हैं एक गाड़ी खड़ी हुई है खुला आसमान दिखाई दे रहा हो रहा है और हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

आपको इस पिक्चर में एक नाई की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें की दो व्यक्ति--